जहाँ पर एक आदमी बैठा है और यहाँ पर एक आदमी कटिग कर रहा है बालो की मिरर लगा हुआ है। सामने टेबल में कुछ प्रोडक्ट्स और सामान रखा हुआ है। नीचे कारपेट बिजी हुए टी.वी. लगी हुई है।

वाइट मोर हैं गिंग काफी सारीजो की बहुत खूबसूरत लग रही हैं यह पूरी वाइट हैं मोरएक घास के ऊपर चल रही हैं वापस आ रही हैं उनकी साइट पर यहां पर जाल बना हुआ हैं।